यहाँ पर एक स्कूटी है और एक स्कूटी छोटा है एक स्कूटी बड़ा है और मोटर साइकिल है जिसमें हेलमेट रखा हुआ है।

यहां पर हरा-भरा पेड़-पौधा जंगल और एक जग और स्कूल दिखाई दे रहा है कपड़ा सूखने दिया हुआ दिखाई दे रहा है दिवार दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहोत सारा आदमी काम कर रहा है और सब आदमी टोपी पहन के लोहा है घर है हरा-भरा जंगल है।